एक आदमी बैठा है जो नीली कलर की टी शर्ट पहना है।

हा ऐसा लग रहा है कि एक सिनेमा हॉल है।

ई यह एक गौशाला की तस्वीर है।

एक आदमी शर्ट पहना है। एक आदमी टीशर्ट पहने हुआ है।

स्विफ्ट कार है उसके पीछे दस पंद्रह बाइक दिख रही हैं।